और इधर-उधर प्लेइंग कर रहे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं कोई बोलिंग कर रहा है कोई देख र --

और यहां पे अच्छे-अच्छे साइकिल है।

पढ़ा जा रहा है और ये बहोत सारे--

अपने दूसरों को प्रेरित अपनी ओर करते हैं बहुत ही मधुर--

हिंदुस पेट्रोल पंप एच_पी का पेट्रोल पंप है जिसमें कई सारे बन खड़े हुए ।

और कई सारे कलेंडर्स लगे हुए हैं और चेयर रखी हुई--

ये एक जिम है जिसके अंदर चार या पांच वूमेन सॉरी मेन खड़े हुए हैं और अपनी बॉडी बना रहे हैं।

एक रेस्टोरेंट है जिसमें दो अ पानी के एक गिलास रखा हैं।